यहाँ पर खुला आसमान दिखाई दे रहा है रेड कलर का। कुछ म मंदिर टाइप का दिखाई दे रहा है। खंभा दिखाई दे रहा है। पीछे हरियाली टाइप की है।

लाइट की लगी हुई है खम्भे। पीछे हरियाली है पेड़-पौधे।

कुछ मशीनें दिखाई दे रही हैं।

कुछ अ अ आदमी हैं कुछ लड़के हैं उसकी उनके चरणों में बैठे हुए हैं उनके हाथ जोड़ते हुए बैठे हुए हैं।

कुछ उम्म गोल्डेन ब्लू --

ऐसा लगता है जैसे कोई आटो को शोरूम हो।

ऐसी कुछ चीजे पड़ी हुई हैं। घर मकान बनता हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ पे शादी जैसा माहौल लग रहा है। डेकोरेशन हो रहा है। लाइट जली हुई है।

यहा पे एक व्हाइट कलर का अ--गेट नजर आ रहा है और व्हाइट कलर की दीवार है। एक गेट लगा हुआ है।

इसमें कलर ब्लू कलर रेड कलर वाइट कलर ये कलर रा डाल रहीं हैं।